और व्हाईट कलर की पुट्टी हुई है घर पे और बराबर में लोहे की रेलिंग है।

यह एक ओपिस है जिसके बराबर में दो सीसो के गेट हैं।

और एक गेट है और खजूर के पेड़ला लगे हुए हैं।

यह एक किश्ती का फोटो है जिन जिस पर दो लोग किश्ती पे खड़े हैं।

ये ए_सी और पंखों की दुकान है जिस के अंदर बहुत सारी ए_सी और पंखे हैं।

पिछली साइड दीवाल का कलर नीला है और बराबर में एक टेबल रखा है जिसका भी सोने सा कलर है।

यह एक रोड पे तस्वीर खींची गई हुई है जिन जिस के सामने दो तीन घर खड़े हैं बहुत बड़े बड़े।

और बराबर में पीछे कि साइड एक बल्ब लगा हुआ है।

और अंदर एक बहुत बड़ी लाइट है।

शिशों का गेट है और ऊपर व्हाइट कलर के और लीले कलर के गुब्बारे हैं।

यह एक चर्च है जिसके अंदर बहोत सारे लोग खड़े हुए और एगो लुगाई है।